दे रहे हैं एक आदमी खड़ा भी--

और उस पर सोफा बना है बै--

ये एक थाली है जिस पर कुछ लीचियों के गुच्छे पड़े हुए हैं लाल रंग की लीचियां दिख रही हैं।

और एक बाल्टी भी बड़ी है।

जिसमें टेबल लगी है एक बड़ी सी कुर्सी है और कुछ छोटी छोटी कुर्सियां भी लगी हुई हैं।

जिसमें एक आदमी बहोत सामान रख कर जा रहा है।

ये एक सामने कुछ रेस्टोरेंट जैसा दिख रहा है।

पंडित उनका गठबंधन कर रहा है और उनके सामने दो चिलम चिंयां भी पड़ी हुई हैं।

पीछे स्टूल जैसा पड़ा हैं जिस पर कपड़ा बिछाया हुवा हैं।

पार्क का सीन हैं जहां एक लड़के ने येलो कमीज और पिंक पेंट पेहनी है।